और आसपास बहोत सारे घर भीं दिखाई दे रहें हैं।

जंगल में बहोत सारी झिसे भी दिख रहे है।

और कुछ बाइक भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है।

मुझे शेर का स्टेचू भी दिख रहा है।